एक नदी दिखाई दे रही है नदी काफी बड़ी दिखाई दे रही है नदी मे काफी ज्यादा पानी नजर आ रहा है नदी का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है नदी के आसपास काफी पेड़ नजर आ रहा है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है।